यह एक मार्केट के म मतलब दुकान है मार्केट के पास--

देखिए यह ग्रोसरी शॉप जैसा लग रहा है यहां पे सब डब्बे में सब सामान रखा हुआ है साबून है।

बहुत बड़ा दुकान है ये लाइटिंग भी बहुत अच्छी जल रही है देखो यहां पे--

बैकग्राउंड में देखो ये तो बहुत लंबा गली है।

एक मतलब ऐ_सी भी लगी हुई है लाइट है पंखा है येलो कलर का है।

व्हाइट कलर के उपर येलो कलर का जो कलर दिया हुआ है सुंदर लग रहा है चेयार भी है।

देखो ये बहुत बड़ा पार्क लग रहा है या किसी का घर में भी ये सब करते हैं ना घर के बाहर बहुत अच्छा अच्छा डिज़ाइन ऑफिस के बाहर--

पीछे से भी ऐसा लगा दोनों तरफ हरियाली है बीच का रस्ता निकाला हुआ --

अलमारी में बहुत रकम का मेडिसिन है दवाइयों की दवाई रखी हुई है सामने भी रैक में भी--

या डांस सिख रहे हैं या तो योगा कर रहे हैं एक्सरसाइज वगैरा भी करते--

के पास में ए_टी_एम भी होगा बहुत ऊपर में नीचे में दुकान रहती है ऊपर में बैंक वगैरह रहती है बहुत सारे--

कोई बहुत मतलब ऐसे कोई मतलब फील्ड है बहुत बड़ा--

यह किराना शॉप लग रही है देखो शॉप बहुत बड़ी दुकान है।

एक के बाद एक चीज कितना सुंदर से सजाया गया है।

और एक जो सूंदर है कोलगेट भी कोलगेट ब्रश शैम्पू साबुन--

सब को देखो वर्क कर रहे हो ऊपर में देखो लाइन में कितने पंखे है यहां पे।

आदमी भी बहोत वर्क कर रहे है यहां पे न बहोत सुंदर नजरा है ये।

बाथरूम का रेस्ट में जो ड्यूटी लगाए थे वो भी रखा और बहुत सी चीजें यहां पे--

यह कोई तीर्थ स्थान लग रहा है बहुत बड़ा मंदिर है देखो यहां पे--

ठंड का टाइम है इसलिए आदमी लोग सब स्वेटर मफलर पहन के आ--

साइड में रहता है ना हाईवे के पास ढाबा आदमी खाना खाने के--

इंस्टिट्यूट है और सर्विसेस की दुकान रहती है।

लाइटिंग देखो पड़ रहा है और सामने में धूप का नजारा भी है।

आइसक्रीम दूध वगैरह रखते हैं और शैंपू के पत्ते टंगे हुए हैं यहां पे तेल का डब्बा रखा हुआ है।

कोई आदमी नहीं है दुकान का साइड का नजारा है लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगा रह--

यहां पे कोई रैली वाली निकल रही है कि कुछ होने वाला है बहुत यहां पे जमा हुए हैं आदमी देखो रास्ता का बीच है यहाँ फील्ड होगा।

ये देखो बहुत बड़ा बहुत गाड़ी यहां पे रखी हुई है और देखो सामने बहुत बड़ा है बैनर भी देखो।

के नीचे कर रहे हैं कोई येलो में बैठा है कोई पिंक में कोई पर्पल पे बैठ के अपना जगह थोड़ा सा छोड़ के वाइट कलर का ड्रेस पे लोग कर रहे हैं।